इस फोटो में मुझे कुछ रोड दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पानी का ड्रम दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बाउंड्री दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कांच के खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी दवाइयां दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे एक हाॅल दिखाइ दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक घर दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे एक कंप्यूटर सेंटर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे टिकट घर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे लाल मिर्च दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ ड्रम --